इस दृश्य में वर्कशॉप दिखाई दे रहा है जिसका नाम ऑटोमोटिव वर्कशॉप है।

और बगल में कुछ ट्रे भी रखे हुए हैं बॉटल्स की।

और एक डब्बा भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लाल कलर के फूल रखें--

और उसके बगल में एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और यह दृश्य रात का है।

इसमें काफी सारे खाने पीने की चीजे रखी हुई है।

और एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि कोल्ड ड्रिंक निकल रहा है।

जोकि रेड और वाइट कलर की है।

इस दृश्य में एक ग्राउंड दिखाया जा रहा है।

जो कि माइक में कुछ बोल रहा है और उनके पीछे काफी सारे लोग खड़े हैं।

और दो गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

और एक तस्वीर भी लगी हुई है दीवार पर।

और बैंक का नाम स्टेट बैंक आफ इंडिया है जो की काफी अच्छा बैंक है इंडिया का।

और बहुत सारी कुर्सियां भी जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए--

और कुछ आदमीया भी चल रहे हैं।